और लो-लेफ्ट साइड मे भी एक पेड़ है और स्टॉप का एक पैनल लगा हुआ है रोड के किनारे।

एक हाथी का स्टैचू बनाया हुआ है राइट साइड मे एक पेड़ है जिस की कोई पूजा वगैरा होती है।

यह एक मंदिर है मंदिर में एक झंडा लगा हुआ है राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में।

ये भी एक मंदिर है जो कि बहोत ऊंचाई तक दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक लाइट नज़र आ रही है इसमें अंदर भी लाइट काफी सारी जल रही हैं।